दिखाई दे रहे हैं अगर बगल घर बने हुए हैं ऊपर तारे दिखाई दे रही हैं।

अंदर काफी बाइके खड़ी हुई है अंदर लोग दिख रहे है अगल बगल की बाइक खाड़ी हुई है एक आदमी भी खड़ा हुआ है ऊपर सजावट भी की गई है ज़हालरो से --

चार से छे बंदे खड़े हुए है लाइन में और ऊपर बैनर लखा हुआ है स्टेट बैंक --

बंसल स्टोर है यहाँ पे कुछ बहुत सारे फ्रूटों का ये स्टोर है।

नीचे एक कार खड़ी हुई है उसके बगल मे एक बंगला बना हुआ है जिसका गेट है पीछे भी घर बने हुए है।

यही यहां पे फूलों के पौधे जमाए जा रहे हैं बहुत सारे गमले टंगे हुए हैं यहां पे प्लांटो के पौधे उगाए जा रहे हैं।

ऊपर फैन लगा हुआ है नीचे एक बेड रखा हुआ है जिसमें--

सीढ़ियां दिखाई दे रही है एक आदमी ऊपर एक आदमी जेंट्स खड़ा हुआ है एक जेंट्स नीचे खड़ा हुआ है बाइक खड़ी हुई है बगल में बाइक खड़ी हुई है।

खूब सारे प्लांट वगैरे भी हैं फूल के पौधे भी हैं अगल बगल पेड़ है घर है।

यहाँ पे झूले पड़े हुए हैं लोग झूले झूल रहे हैं कुछ लोग ऐसे खड़े हैं एक दो लोग झूलों में बैठे झूल रहे हैं झूला।

ये एक मंदिर जैसा लग रहा हैं। यहां पे एक मंदिर बनी हुई हैं। बगल में एक पेड़ है। एक जिंस खड़ा हुआ है।